लाल रंग का लाइट भी जला हुआ है।

इस छवि में मुझे एक नदी नजर आ रहा है जिसके एक तरफ सूखा है और एक तरफ हरियाली दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस समय में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो शीशे का बना हुआ है।

नीला रंग का पिलर है और ऊपर एम एस एल टी एंटरप्राइज लिखा हुआ है नीचे बहोत सारे बोर्ड रखे हुए हैं।

इस छवि में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां बच्चों की बहुत सारी अ खेलने की चीजे रखे हुए है।

छवि में मुझे एक रात का नजारा दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे हरियाली है और बड़े बड़े पेड़ है।

सोफा रखा हुआ है और मेज भी।

लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं नीचे बहुत सारे गाड़ी पार्क हुए दिखाई दे रहे हैं बेलकनी दिखाई दे रहीं हैं।

ऊपर छत भी बहोत डिजाइन से बनाए हुए जो पीला रंग का है।

एक बोर्ड भी है जो धुंधला है।

गाड़ियां भी दिखाई दे रहे हैं और कोनों कोनों पर दुकान बनाए हुए दिख रहे हैं।